यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं।

यहां बहुत ज्यादा पानी दिखाई दे रहा है।

दो बैल बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ दो प्रकार के ईट लगे हुए हैं।